यहाँ बड़ी सी नदी है नदी में बोट चल रही है बोट का कलर रेड है।

मेज पर कुर्सियाँ रखी हुई है मेज पर कवर पड़ा है।

स्टेज को फूलों से सजाया गया है और बोर्ड पर लिखा है इंद्रा गाँधी विश्व विद्यालय--

वाइट कलर की इमारत है जिसमे शीशे की खिड़कियां बनी हुई है निचे शीशे का गेट भी लगा हुआ है।